एक क्रिस्चियन मैडम है।

ऊपर चकोर जैसा ऊपर मकान है। फिर उधर वृक्ष दिख रहा है।

मंदिर से फिर नीचे पेड़ सब है हरा-भरा दिख रहा है। उसके बाद फिर इधर इधर घर जैसा है।

ये इधर पहिया है ट्रैक्टर का।

बल्ब स सब जल रहा है।